आस पास बहुत सारे पेड़ पौधे है आसमान का रंग सफेद और नीला दिख रहा है।

यहां पे एक आदमी दाढ़ी बनाते हुए दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर एक टॉवेल पड़ी है।

यहां पे बहोत सारी बस दिखाई दे रही है जो रंग बिरंगी है।

यहां पे बोहोत सारी बाल्टिया रखी हुई हैं। यहां पे पोस्टर लगा दिखाई दे रहा है। एक पेंटिंग भी लगी हुई है।

कुछ पर्दे भी लगे हुए हैं यहां पर चैनल दिखाई दे रहा है जो पीले रंग का है।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

दो टी_वी भी लगी दिखाई दे रही फ्रिज पर रखी हुई है पर्दे भी लगे हुए हैं।

यहां पे बाहर मोटरसाइकिल खड़ी है जिसके पास दो आदमी खड़े हुए हैं।

जो हरे व रंग की हैं इनकी खिड़कियां कांच की बनी हुई हैं।

यहां पे एक आदमी बस पर चढ़ रहा है जिसे एक थैला टांग रखा है।

यहां पे एक दुकान दिखाई दे रही है जिसके अंदर बहोत सारा सामान है।

यहां पे टीन के तख्ते पड़े हुए हैं। यहां काउंटर भी बना हुआ है।